जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है।

जिसमें कि घास लगा हुआ है।

जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है।